बहोत ही पुराना मंदिर है जहाँ पर सब ये आरती चल रही है बहोत सारी पब्लिक जो है |

साथ में ही साइड में ही एक कार खड़ी हुई है।

मिट्टी जो है सभी प्रकार की मिट्टी इसपे नहीं यूज़ की जाती है।

जो कपडों को और निखार देतें हैं।

कुछ समय के बाद ये रंगोली कम्प्लीट कर देंगे जो देखने में बहोत ही खूबसूरत दिखाई देगी।

मार्केट में इनको सप्लाई कर दिया जायेगा शॉप कीपर्स के लिए वहाँ से फिर --

अपनी डीजल डलवा रहा है साइड में एक ट्रक जो है वो डीजल डलवा के साइड में खड़ा हुआ है अपनी रिपेयरिंग कर रहा है।

जस्ट अभी एक घर बना है कंप्लीट किया जा रहा है लास्ट फिनिशिंग उस घर में चल रही है।